ऊपर आसमान दिखाए गए हुए हैं।

चित्र में एक नदी दिखाई दे रहे हैं।

नदी के बगल में बहुत सारे पेर हैं।

चित्र में एक कॉफी शॉप का फोटो दिखाई दे रहे हैं।

इनके बगल में एक लाइट का बल्व दिखाई दे रहे है ।

फैन फैन के बगल में लाइट भी दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में छठ पूजा दिखाई दे रहे हैं।

उन लोगों ने हाथ बंद करके पूजा कर रहे हैं।

बस के बगल में एक पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

मूर्ति के सामने दो घड़ी दिखाई दे रहे हैं।

और घरी के नीचे एक कैलेंडर भी दिखाई दे रहे हैं।

एटफोन पे एक डसबिन दिखाई दे रहे हैं।

स्टेशन में एक स्कूटी दिखाई दे रही हैं।

चित्र में एक गैरेज दिखाई दे रही है।

इस गैरेज के अंदर एक गाड़ी रिपेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है।

चित्र में फल की दुकान दिखाए गए हुए हैं।

यहां विभिन्न प्रकार के पेड़ भी मौजूद है।

आटो के अंदर कई लोग बैठे हुए हैं।

इस चित्र में एक फील्ड दिखाई दे रही है ।

इसमें बहोत सारे छोटे छोटे घास है।

फील्ड में बहुत लोग खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

घर के ऊपर कुछ साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं।

इस घर में बहोत सारे खिरकी दिखाए गए हैं।

घर के सामने पानी जमा हुआ है।

होटल में बहोत सारे पौधे रखे हुए हैं।

शॉपिंग मॉल में बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं।

इस मस्जिद का रंग है सफेद।

दो लोग बैठे हुए हैं और तीन लोग खड़े हुए हैं।

टेबल के ऊपर दो प्रोडक्ट मौजूद है।

पेड़ के नीचे छोटे छोटे बहुत सारे पौधे हैं।

ऊपर लाइन का बहोत सारा तार है।

बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रकार के कपड़े पहने हैं।